यह लड़का यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे लोहे की सामान यहाँ पर रखी गए हैं यह लड़का वह लोहे की सामान को साफ़ कर रहा है वहाँ पर और भी सारे गाड़ी के टूटे-फूटे सामान भी रखे गए हैं ।

यह जिम क्लास काफी बड़ा है। यह जिम क्लास में अनेक प्रकार के जिम करने के समान रखे गए है। यहाँ पे बोहोत से लड़का जिम करने के लिए आयी हु --

यह नाव पर बहुत ही बड़ी-बड़ी जाल है यह जाल से मछली पकड़ी जाएगी।

बिल्डिंग है यह बिल्डिंग काफी बड़ा है यह बिल्डिंग में बहुत से कमरे हैं यह बिल्डिंग में बहुत से आदमी भी हैं बिल्डिंग के छत छत पर बहुत सारे कपडे सूखने के लिए डाले गए हैं ।